और बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं और दो गाड़ियाँ खड़ी हैं।

कुछ बड़ी मछलियाँ रख के बेच रहा है।

और उसके नीचे एक बोर्ड है उस पे वोडाफोन दिख रहा है दोनों साइड से वोडाफोन का लोगो लगा है।

ये एक सड़क दिख रही है सड़क के ऊपर से एक आदमी --